यह फोटो देखने से आपको पता चलता है कि यह बीकानेर की हवेली है।

नीचे मंझे वाला फर्श बना है।

इस फोटो में एक बहोत बड़ी सारी नदी दिखाई गई है।

यह गुरुद्वारा है यह गुरुद्वारा आर सी बी कॉलोनी बीकानेर का है।

यह एक हेयर को सीधे करने वाली मशीन का फैक्ट्री है जहां हेयर --

इस फोटो में दो लड़के गेट के पीछे बैठ कर मोबाइल छेड़ रहे हैं।

और यह लड़का इन्हें बेचने के लिए आराम से बैठा है।

और जो ये लकड़ी का फर्नीचर है यह बैठने के लिए है।

ये दोनों ब्लू शर्ट में है और गुब्बारे भी पर्पल और ऑरेंज कलर के लगाई हुए हैं।

जिसमें लकड़ी का टाइलें स्प्रिंग सब कुछ मिलता है।